ये एक मंडप की तस्वीर है।

मंडप के ऊपर एक छतरी है जिसपर फूलों की सजावट है।

तस्वीर में एक मछली बाजार दिख रहा है।

पीछे की दीवार पर एक बास का पैनल और कुछ सजावटी वस्तुएं लगी है और एक व्यक्ति सोफे पर बैठा है।

हरे भरे घास के मैदान फूलों की क्यारिया और कुछ पेड़ पौधे है।

कई अलमारियां है जिनमें विभिन्न प्रकार के बिस्किट और कुकीज़ रखी हुई है।

दीवार पर टी टाइम और वलगेरिया लिखा हुआ है।

इमारत के सामने नीले रंग की बड़ी खिड़कियां है।

तस्वीर में भारतीय डाकघर का काउंटर दिख रहा है।

मंच पर प्रोजेक्टर से प्रेजेंटेशन चल रही है।

पारक के नीचे शहीद स्मृति लिखा हुआ है और स्मारक के पीछे एक ऊचा झण्डा है।

स्पीड में एक चाय की दुकान दिखाई दे रही है।

मोर का शरीर नीले और हरे रंग का है।

भूमि में कुछ इमारतें और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दुकान का नाम श्री शाम फ्रूट जूस है।

पहाड़ मे एक मोबाइल टावर में दिखाई दे रही है।

कुछ ही दूरी में एक बड़ा सा इमारत भी दिख रहा है।

तस्वीर एक जीम का दृश्य को दिखाया गया है।

जिम में कुछ लोग एक्सरसाइ कर रहे है।

इमारत के ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग स्थल है।